इसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जीस पर एक लड़की का चित्र है और उसका फेस ब्लर किया हुआ है।

ए_टी_एम की दो मशीन भी रखी हुई है।

जिसमें दो पानी के नल भी लगे हुए हैं।

कुछ पेड़ गमले में लगे हुए हैं यहां पर कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं।

ये एक मंदिर मंदिर है।

पीछे से कुछ लाइट भी दिखाई दे रही है।

और कट्टे रखे हुए हैं कुछ गत्तों में सामान भी है।

इस फोटो में हमें मेज पर एक जग रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी रखी है एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

इसमें से कुछ के फेस ब्लर किए हुए है।

यह फोटो किसी बेडरूम का है यहां पर कुछ कपड़े रखें हुए हैं।

दो सोफे पड़े हुए हैं एक टेबल और एक पीछे कुर्सी भी रखी हुई है।

इस फोटो में हमें मकान दिखाई दे रहे है इसके पास दो दुकान है।

इसके पास बिजली के खंभे खड़े हुए हैं।

इसके पीछे एक टीन भी दिखाई दे रही है।

पीछे आईफोन का फोटो भी दिखाई दे रहा है।

हमें इस फोटो में चार बाइक दिखाई दे रही है।

इसके पास दो नारियल के पेड़ खड़े हुए हैं।

अनार संतरे और केले और पपीता दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी लाइट जल रही है।

हमे इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसका फेस ब्लर किया हुआ है।

ये पैसे गिन रहा है इसके पीछे सेब रखे हुए हैं।